यहाँ पर एक दुकान दिखाई दे रही है जिसकी शटर लगी हुई है। इसकी शटर का कलर ब्लू कलर का है। औश --

पर एक आदमी बैठा हुआ है रही है एक लोहे का खम्भा भी दिख रहा है वो लाइटिंग का खम्भा है।